यह एक होटल है। होटल के एक हॉल है जहाँ पर शादी पार्टी एवं अन्य अ ऑर्गेनाईजन एवं --

कार को ठीक किया जाता है और बहोत ही अच्छा काम होता है। जैसे यहाँ पर दूर-दूर से लोग काम करवाने के लिये आते हैं।

कलर से यहाँ पर एक चित्र बना रहा है जो कि काफी बढ़ियां और काफी अच्छा इस स्कूल में प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। जिससे लोग ड्राइंग करने मे काफी अच्छे हैं और बोहोत अच्छे तरह से ड्राइंग कर रहे हैं।

यह एक डेरी की दुकान है जो इस दुकान का नाम अनमोल डायरी है। यहां पर सभी बोहोत अच्छे-अच्छे सामान यहाँ पर दूध घी पनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन --

अ वगेरा भी मिलता है और यहां पर शादियों पार्टियो मे आर्डर भी लिया जाता है जो काफी अच्छा और साफ सुथरा यहाँ पर समान मिलता है। यहाँ पे स्कूल बच्चे गढ़तंत्र दिवस में कुछ पुलिस की ड्रेस एवं परी ड्रेस भी पहने जो काफी अच्छा दिख रहा है।

यह एक फ्यूल स्टेशन है। पेट्रोल पंप है जो कि एच.पी. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का है। यह म्म फ्यूल स्टेशन काफी अच्छा और काफी साफ सुथरा है। इस पुलिस स्टेशन फ्यूल --

छोटे मोटे समान उपलब्ध होते हैं जिससे लोग अचानक से कोई भी समान की जरूरत होती है तो इ दुकान से लेके जाते हैं। यह दुकान मे डेमो के लिये कुछ समान भी यहाँ पे टांग के रखा गया है यहाँ पे बहोत अच्छा समान मिलता है।

इस मंदिरों तरीके से सजा कर गुंबर का आकार बनाया गया है जो काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एक पुजारी भी चौबीसों घंटा रहते हैं जिनका नाम आकाश है और इसकी को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है।

कुछ अपार्टमेंट बनाये गये हैं जो काफी अपार्टमेंट यहाँ ऊंची-ऊंची बिलडिंग है और काफी अपार्टमेंट यहाँ पे बनाये गया हैं जो कि काफी अच्छा है। यहां का बिल्डर इस अपार्टमेंट को बेच को बेच के इसे --

एवं यहाँ पे हॉलमार्क के सभी प्रकार के सोने मिलते हैं। यहाँ पर दीवार पे कुछ मुकुट वगैरा इत्यादि बना के अअअ डेमो के लिए रखा गया है जो देखने में काफ़ी सुन्दर और अच्छा दिखाई दे रहा है।